और गार्डन का मतलब कॉलेज का गार्डन है। इसमें घुमने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं।

हाथ में घड़ी पहने हुए हैं ब्लेजर पहने हुए हैं और चेयर पे बैठ के बहुत ही अच्छी तरह से फोटो बहुत ही बढ़िया फोटो है।

राशन दुकान डिजिटल स्टोर यहाँ की फ्री टी.वी. कूलर सब मिलते हैं ।

यह भाई साहब का पिक बहुत ही अच्छा है कोई फंक्शन में गए हुए हैं जहाँ की ये सस पूरी तरह सज के गए हैं शेरवानी चढ़ा के गए हैं।